इस फोटो में सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा बना हुआ है।

इसके पास में रेड कलर से कुछ--

इसके पास में एक बैठने की सीट लगाई हुई है।